घर के साइड में एक येलो कलर का बस भी नजर आ रही है।

टेबल के ऊपर क्यू_आर कोड भी नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के आगे बहोत सारा गाड़ी भी पार्किंग किया हुआ है।

टेबल के साइड में एक ब्लू कलर का गैलन भी रखा हुआ है।

यहां पूजा के लिए छोटे छोटे घर बनाई हुई है।

घर के साइड में जंगल भी उगी हुई है।

यहाँ स्टूडेंट्स लोग अपना यूनिफॉर्म में है।

में एक नोटिस बोर्ड भी लगाया हुआ है।

जो घर के बाहर जंगल भी उगी हुई है।

ये एक जुंबा क्लास का अंदर है।

पे एक ब्लैक कलर का स्पीकर भी रखी हुई है।

नीचे एल_जी स्मार्ट इन्वर्टर भी लिखा हुआ है।

दुकान के सीलिंग को बैलून से डेकोरेट किया हुआ है।

ट्रांसपेरेंट शेल्फ के अंदर मोबाइल कवर्स लोग बहुत सारा रखी हुई है।

बाहर में बहुत सारा गाड़ी बाइक और स्कूटी पार्किंग किया हुआ है।

टेबल में मुझे मेनू और चीज केक भी नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के साइड में एक रेड कलर का मारुति कार भी रखा हुआ है।

मे एक वॉल क्लॉक भी लगाया हुआ है।

इस रूम का वॉल का कलर आधा नियॉन और आधा व्हाइट है।

बाहर बहुत सारा गाड़ी और स्कूटी बाइक लोग भी पार्किंग किया हुआ है।

घर के सामने दो लड़की गाले पहनी हुई है।

ये यहां येलो कलर के डिस्टेंस मेजर करने वाला मशीन भी रखा हुआ है।

हाथ में येलो कलर का बांसुरी भी पकड़ी हुई है।

यहां एक पत्थर का गुफा है।